एक बिजली का खाम्भा भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक नदी को दिखाया गया है।

और बॉर्डर लाल रंग के हैं।